इस इमेज में हमें कोचिंग सेंटर जैसा लग रहा है जिसमें बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं। बहोत सारे फैन लगे हुए हैं।

हमें बिल्डिंग जैसी दिखाई दे रही है। इस इमेज में हमें कॉलेज जैसा लग रहा है और चार पांच गाड़ी खड़ी हुई हैं।

यह हमें एक घर जैसा दिखाई दे रहा है एक शटर लगी हुई है ऊपर रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसमे बुक ऑफिस लिखा हुआ है चार पांच गमलें दिखाई दे रहे हैं सीढियाँ दिखाई दे रही हैं।

दिखाई दे रही है इस इमेज में हमको बहुत सारी गाड़िया खड़ी दिखाई दे रही हैं इस इमेज में एक टिन सी दिखाई दे रही है।

चित्र ऐसा लगा हुआ है। जिसमें बुंदेली ढाबा लिखा हुआ है। अमूल लिखा हुआ है। दो छतरी लगी हुई है। दो छतरी लगी हुई है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पन्नी लगी हुई है।